फोटो में एक जिम दिखाई दे रहा है। उपर जो है कई सारे पंखे लगे हुए हैं।

और गुब्बारे भी लगे हुए हैं नीले और सफेद रंग के--

जैसी काफी सारी क्रीमे सारी में रखी हैं और यहां पे फेस वॉश रखा हुआ है और बॉडी जेल भी रखा हुआ है।

एक माउस रखा है और इस लड़के ने जैकेट पहना हुआ है।

और यहां पर काफी सारे झूले हैं एक गेट दि दिख रहा है।

और यहां ये एक पुल पे खड़े हुए हैं।

इस फोटो में काफी सारे फ्रुट दिखाई दे रहे है जैसे कि सेब--

ए क नाव दिखाई दे रही है इस पे दो लोग बैठे हुए हैं।

आसपास पानी दिखाई दे रहा है एक लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी है।

एक सफेद रंग की कार दिख रही है।

और एक अंकल है जिसके हाथ में बच्चा है और वह जा रहे हैं।

नीचे फर्श पे पत्थर लगा हुआ है।

सामने एक मंदिर नजर आ रहा है बीच में शेरावाली माता की मूर्ति नजर आ रही है।

और नीचे जो है टाइलें लगी हुई हैं और ये टाइलें प्रिंटेड वाली--

और हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पेड़ हैं।

और अ फर्श पे टाइले नजर आ रही है।

और यहां पर काफी बड़ी जगह दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक ऑटो दिखाई दे रही है एक अंकल जी दिखाई दे रहे हैं।

और मोबाइल नंबर लिखा है सेवन टू जीरो --

और ऊपर की दीवार भी सफेद रंग की हैं।

येलो रंग की दीवार है और आगे काफी सारे बर्तन रखे हुए हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक।

टोटल ये हैं जो हैं पाँच मंजिल बनी हुई हैं।

और ये बच्चे काम कर रहे हैं टेबल पे कलर्स और फेविकोल रखी हुई है।

और बाहर रोशनी हैं कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

सामने ईट ईट दिखाई दे रही है बहोत सारी।